जहाँ भी जाना होता है ना वहाँ यहाँ बैठ कर जाते हैं इसमें ऑटो में |

एक लड़का है जो की फ्रंट कैमरे से सेल्फी क्लिक कर रहा है और उसने अपना मुंडा टेढ़ा बना रखा है।

यह एक सर्विस सेंटर है इस सर्विस सेंटर का नाम श्री शक्ति ऑटोमोबाइल --

और यहाँ पर सर्विस होती है |

इस तस्वीर में हमें यह दिखाई दे रहा है कि किसान अपने --

यह एक होटल है इस होटल के अंदर चार मंजिल है।

यह इस रूम में कोई भी नहीं है यह रूम खाली है गिलास मुदा रखा है इसमें पानी नहीं है।

नीचे एक नाव खड़ी हुई है जो की समुद्र के अंदर है यह अभी खाली है।

इस तस्वीर में अधिकतर लोग लाइन में खड़े हैं। यह लाइन सीधी है और एक बंदा --

जो कि इसकी चारो दीवार चारो ओर घूमने के लिए इजी बनाता है।

चेयर टेबल वगेरा डली हुई है इसके ऊपर एक झूमर भी लटका हुआ है जिस पे लाइट जल रही है।